और बहुत बड़ी सड़क दिख रही है जिसमें टाइल्स लगी हैं।

वहां पर बहुत सारी शॉप्स दिख रही है।

यहां मंदिर दिखाई दे रहा है।

छत दिखाई दे रही है छत पे लाइट्स दिख रही हैं।

भगवान की तस्वीरे दिखाई दे रही है।

बहोत सारी बीजली की तारें दिख रही हैं।

बहोत बड़ा गार्डन भी दिख रहा है गार्डन में बहोत सारे पौधे दिख रहे हैं।

फैन दिख रहा है छत दिख रही है और स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग में बहोत दरवाजे दिख रहे हैं।

खुली जगह दिख रही है बहोत सारी साइकिल्स दिख रही हैं एक बाइक दिख रही है बाइक में आदमी दिख रहा है।

और ये इसके नीचे बाक्स दिखाई दे रहे हैं।

एक बोर्ड दिख रहा है बोर्ड के ऊपर दासाबीर अकेडमी ब्यूटी एंड हेल्थ केयर सैलून लिखा है।

यहां पर बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और छत भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ट्रैक्टर दिखाई दे रहा हैं और बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।